सर में कपड़ा लपेटा हुआ है और हाथ में मोबाईल रखा हुआ है उसके पीछे एक बस है जिसमे फूल लगा हुआ है वह बस अभी नया है उसके अंदर गुब्बारें लगी हुई है फूल संतरे रंग की लगी हुई है।

एक दुकान है जिसके बाहर दरवाजा लगा हुआ है जो कि लकड़ी का बना हुआ है उसके ऊपर एक बोर्ड बना हुआ है जिसे दुकान का नाम लिखा हुआ है दुकान के चारो तरफ लकड़ी के बने हुए काउंटर है जिनमे सामान रखे हुए है।